यहां पे आप देख पा रहे है कि देखिये ब ये सारे लोग जोगिंग कर रहे है यहां पे और धूप की वजह से केप भी पहने हुए है और यहां पे एक ग्राउंड है जिसमे कि घास उग रही है।

और यहां पे आपको एक चेयर भी रखी हुई है कंप्यूटर के सामने और वहां पर हम देखेंगे कि एक कोई है जिसके आस-पास बहुत सारे कागज पतरा रखे --

आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक हिरन जैसी है और ये यहाँ पर खड़ी हुई है ऊपर की तरफ कुछ देखना चाहती हैं।

जैसा की आप देख पा रहे है की पार्क जैसा है जिसमें अच्छे से ब्यूटीफुल पेड़ वैगरह भी लगे हुए है ट्री वैगरह और ग्रास वैगरह सारी जो पार्क में होता है सारा दिखाई दे रहा है और --

इसमें और प्लेटें भी रखी हुई हैं रेड कलर की इधर व्हाइट कलर का हैण्ड वाश करने का रखा हुआ है यहाँ पे।